यहाँ एक मछली की दुकान है यहाँ पर दो लोग मछलियां दे रहे हैं।

यहाँ बड़ी गाड़ियों का गैरेज है यहाँ पर एक साथ कई सारी गाड़ियाँ बन रही है यहाँ तीन से चार लोग खड़े हैं।

यहाँ पर पांच से छे लोग हैं यह घर सफ़ेद कलर का है।

यहां पर दो मेडिकल स्टोर है एक मेडिकल स्टोर के आगे काफी सारे दवाईयों के गद्दे भरे रखे हुए हैं।

यहाँ बहुत बड़ी सारी नदी है इसके पास तीन से चार पेड़ लगे हैं।